इसके ऊपर एक ऐ_सी लगाया गया है यहां पर कुछ लड़के लड़कियां योगा कर रहे हैं।

हरा और उजला कलर का बिल्डिंग बनाया गया है जिसमें बहोत सारि खिड़कियां दिखाई पड़ रही हैं।

इस फोटो में बहुत सारे आदमी दिखाई पड़ रहे है और दो दुकान भी दिखाई पड़ रही है।

जिसका रंग उजला ब्लै उजला ब्लू और डेनिम ब्लू है।

इनके सामने मूर्तियां भी लगाई गई है।

पीछे की साइड में रात दिखाई पड़ रहा है और उसके पीछे बड़ा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है।

यह एक दुकान है जिसमें टाइटंस के समान बेचे जाते हैं जैसे घड़ी पर्स स्प्रे बेल्ट --

यहां पर नीचे में बहुत सारे आदमी भी दिखाई पड़ रहे हैं।

कुकर दिखाई पड़ रहा है और एक कुकर का बड़ा सा डब्बा दिखाई पड़ रहा है।

यह एक लोहे की दुकान दिखाई पड़ रही है जिसके जिसको करकट के द्वारा ढका गया है।

जिसके चारों तरफ लोहे पड़े दिखाई पड़ रहे हैं।

यह एक डायमंड इंटरप्राइज का दुकान है जिसमें प्लंबिंग का सारा सामान भेजा जाता है।

ऊपर नकली फ्लावर लगाए गए हैं नीचे एक लड़का है जोकि झुका हुआ है।

नदी जिधर जा रही है उधर एक बड़ा सा पहाड़ है।

इसके नीचे बिल्डिंग योर ड्रीम होम लिखा हुआ है जिसके बगल में विशाल चौबे लिखा हुआ है जिनका नंबर दिया गया है।

पीछे भी बहोत सारी सामाने रखी हुई है।

एक कार है जिसके बोनट पे दो बैलून है जिसमें से एक बैलून का रंग ब्लू है और दूसरे का बैगनी है।

जिसके चारों तरफ लोहे का कोई सामान लगाया गया है।

इसके जिसके बाहर चार लाइटे लगाई गई हैं जिसमें से तीन लाइट हरा कलर का जल रहा है।

एक व्हाइट कलर का मशीन है जिसमें तीन लाइटें लगाई गई है जिसमें से एक लाल एक पीला एक ब्लू है।

जिसके ऊपर एक और टायर रखा हुआ है।

यह किसी के शादी का फोटो है जिसके चारों तरफ परदा लगाया गया है जिसका कलर अलग अलग है।